इस इमेज में कुछ मज़दूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं यहा पर कुछ मज़दूर खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

जिसमें से एक व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है यहाँ पर पीछे कुछ व्हाइट -व्हाइट लाइट्स की भी जलती हुई नज़र आ रही हैं।

जिसके पास में एक व्यक्ति ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए गले में एअरफोन लटकाये हुए हाथ में पानी की बोटल लिये हुए सेल्फ़ी लेता हुआ नजर आ रहा है पीछे कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रही हैं।